ये पूरी वाइट कलर की हैऔर इसकी बाउंड्री भी वाइट कलर की है भवन के चारों तरफ लगे हुए है बाहर एक कार खड़ी है।

जिसके पीछे एक बड़ा सा लंबा सा पेड़ है उसपे रेड कलर के फ्लावर्स लगे है हुए हैं मूर्ति के चारो तरफ बाउंड्री बनी हुई है।

बहुत बड़े से हॉल का पिक है जिसकी सजावट बहुत अच्छी करी गई है जिसमें लाइट ही लाइट लगी हुई है कई सारी लाइट लगी हुई है।

ये एक किसी मेले का चित्र है जिसमें की ग्रीन कलर की कारपेट बिछी हुई है कुछ लोग आ जा रहे हैं और कुछ लोग बैठे हुए हैं।

किसी स्कूल के का पिक है जिसमें बच्चे बैठकर आर्ट एंड क्राफ्ट कर रहे हैं।

एक जेंट्स शिक्षक खड़ा है मास्क लगाए उनके पीछे दो लेडिस साड़ी पहने हुए खड़ी हैं और ग्रिल लगी हुई है लोहे की--

ये एक पूल के ऊपर का चित्र हैजिसमें ग्रीन कलर का ऑटो रुका हुआ हैऔर उसके बहार सवारियां खड़ी हुई है।

यह एक बहुत बड़े से ग्राउड का पिक है जिसमें चारो तरफ पेड़ लगे हुए है आसमान दिख रहा है। और नीचे ग्रास को दो लड़के फवड़े से मिट्टी खोद रहे है यह--

और इसकी सजावट ब्राउन और येल्लो कलर के फ्लावर से हैँ जिसमे ग्रीन लीव्स भी लगी हुई हैँ।

ये एक स्कूल का पिक है जिसमें लोहे की टेबल पर बच्चे खड़े होकर आर्ट एंड क्राफ्ट का वर्क कर रहै हैं।